यहां बहुत सुंदर बना रखा है सजावट हो रखी है।

उस कुर्सी में एक बंदा बैठे देख भी रहा है दिवाले सुंदर हैं।

यह एक पंप है जिसमें कि--